एक आदमी खड़ा हुआ है।

और यहां सामने एक सड़क भी टाइल्स की बनी हुई है।

सामने एक गुंबद है बड़ा सा उसके सामने बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

इसमें बहोत सारे स्टूडेंट हैं अंदर वॉल बाहर रोड है।

व्हाइट कलर के बोरे रखे हुए हैं जिसमें कुछ सामान है।

गेट के पास एक औरत खड़ी है। ब्लैक कलर का नकाब ओढ़ेके औ एक बच्चे को ले करके।

और ब्लैक कलर की जाकेट पहने हैं गले में रुमाल बांधे है।

यह एक पार्क है इसमें पटरी बनी हुई हैं जिराफ की।

यह मंदिर है मंदिर के अंदर एक पंडित खड़ा है।

है इसमें भगवान की मूर्तियां रखी हैं जैसे गणेश की मूर्ति हो गई राधा कृष्ण की मूर्ति हो गई।

उसके ऊपर लैंप रखे हैं लैंप के बगल में स्विच बोर्ड है।

हां पे आइसक्रीम वाला भी है।

दो कंबल रखे हुए बेड पे चार्जर पड़ा है बेड पे एक बेड के बगल में एक टेबल है दो कुर्सी है।

पेड़ लगे हुए हैं यहां पे बहोत सुंदर सुंदर छोटे छोटे बड़े बड़े।

इसमें एक प्लेट है। इसमें अखबार है। अखबार के अंदर अंगूर रखें है बहुत सारे।

साइड में कुछ प्लास्टिक का समान रखा हुआ है।

नीचे वाइट कलर की तीन लाइनें बनी हुई हैं लड़को ने पैर में जूते पहन रखे हैं।

ये बड़ा सा शीशा एक लगा है और उसके नीचे दो वॉश बेसिन है जिसमें दो टोटियां लगी हैं।

दीवाल पे फोटो एल्बम्स लगी कुछ जिसमे चित्र बने हुए है।

ऊपर सामने ऐ_सी लगी है।

और यहाँ पे रेड कलर की कुर्सियां रखी हैं।

तसले के सामने दो बच्चे खड़े हैं।

सैलून में दो परदे लगे हैं।

जिसपे वाइट और ब्ल्यू कलर से कुछ लिखा हुआ है।

एक ने रेड कलर की और दूसरे ने व्हाइट कलर की--

जेब्रा जिराफ और गेंडे का--

जेब्रा के बगल में एक आदमी खड़ा है जेब्रा के ऊपर हाथ रख के--

घास लगी हैं छोटी छोटी सी हरी हरी सी।

इसमें रेड कलर से कॉलेज का नाम लिखा हुआ है बाहर बहुत बड़ा गेट लगा है कॉलेज के।

इसमें सामने एक ब्लैक और व्हाइट कलर का डिवाइडर बना हुआ है।

जिन्होंने व्हाइट और येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है यह सब खड़े होकर गॉड से प्रेयर कर रहे हैं।